और उसके आसपास कुछ गाड़ियां खड़ी है और कुछ-कुछ खंभे दिखाई दे --

और इसमें कुछ --

को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे --

कलर इनमें से दो का व्हाइट है और एक का ब्लू --

पिंक है और उसके दो छोटे टाइप बने हुए हैं।

और क्लासरूम की दीवार का कलर व्हाइट है और ऊपर एक --

कमरे निकाले गए हैं और जहाँ से फोटो लिया गया --

उसके उसकी दीवार पे बोहोत सारे शेल्फ लगे हैं। उसमें कोई कुछ सामान रखा --

के अंदर दो मोटे-मोटे पेड़ हैं।

में लेटकर या फिर बैठकर वेट लिफ्टिंग की जा --

कोई जंगल का दृश्य है। इसमें एक आदमी --

में व्हाइट कलर की वॉल्स हैं और कुछ जो हैं --

जो प्रवेश के रहे हैं उनके हैट का कलर --

किसी का है और आस पास --

यह एक राशन की दुकान की तस्वीर है।

इस दिश को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई ये एक आदमी की तस्वीर है।

और उसमें बब्बर शेर बैठा हुआ है।